इस कच्चे पूल को पीपा पूल भी कहते हैं।

और इस बिल्डिंग में बहुत सी भीड़ लगी हुई है।

यहां पे कई सारे काउंटर बने हुए हैं।

जो पहले चार्ज इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है।

और इस बिल्डिंग के आगे एक कार खरी है।